वे गेटो और पूरा-पूरा आसमानी कलर वाइट कलर का ढला हुआ है रंग पेन्‍टिंग किया हुआ है घर देेखने में बहुत सुंदर लगता है।

यहाँ पे सब्‍जी खरीदने आता है देखने में बहोत अच्‍छा --

बड़े दो गो काला है एगो भूरा कलर का है एगो आदमी खड़ा है।

और एक अ मरर्ची - मरर्ची नेय हरी मिर्च है और घेरा है।

स्‍कूल दिखाई देेता है और घर भी दिखाई देता है।

एक फील्‍ड है फील्‍ड में पेड़-पौधेे हैं और एक वो एक वाइट कलर का रास्‍ता भी है।